साइड में एक ग्रीन कलर का धान लोग दिखाई दे रहे है।

नीचे में फोटोग्राफी कोई कर रहा है।

और मुजिक सिस्टम दिखाई दे रहा है।

बगल में एक छेद है।

वो बहुत सारे है टीचर लोग भी है।

नोटिस बोर्ड दिखाई दे रहा है और एक गेट दिखाई दे रहा है।

और अंदर में गाड़ी पार्किंग दिखाई दे रहे--

में अ किलो नापने वाला वो रखे है बहुत सारे।

खिड़की जो शीशा से बना हुआ दिखाई दे रा है।

एक फुटबॉल ग्राउंड है उसमें एक पोस्ट दिखाई दे रहा है।

वहां में पाइप लूप भी दिखाई दे रहा है बहुत सारा।

ये एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट के अंदर में ब्लैक कलर का टेबल है।

पीछे में रेड कलर का चेयर है।

लाइट दिखाई दे रहा है टीना है और टीना के सामने लोहा लोग है वहां में।

बहुत सारे काट लोग भी है।

सेम इक्वल कलर का गच्ची दिखाई दे रहा है इसमें बीच में घर लोग दिखाई दे रहा है।

फ्लोर जो कारपेट से बिछाया हुआ है और पोस्ट जो व्हाइट रेड एंड ग्रे दिखाई दे रहा है।

येलो कलर का है बैक साइड में और वॉल कलर जो वाइट है सीलिंग कलर भी व्हाइट है।

और कुछ कंप्यूटर चेयर लोग ब्लैक कलर लाइन से रखा हुआ है।

बस ड्राईवर दिखाई दे रहा है एक आदमी और बहुत सारे आदमी लोग बस का बाहर में हैं।

डसबिन दिखाई दे रहा है घर दिखाई दे रहा है आसमान जो ब्लू दिखाई दे रहा है।